किसी चीज का एक ऑफिस है जिसमें सोफा लगा हुआ है शेल्फ है जिसपे गुलदस्ता रखा हुआ है।

और चार तरह का मिठाई है।

और सारे नया है जिस सब पर रैपिंग चढ़ा हुआ है।

और जो-जो जोकि कंपाउंड इक इंटरनेशनल ऐयरपोट का है।

ये एक किसी रेस्टोरेंट के अंदर का फोटो है।

जिसपे इंग्लिश कैफ़े लिखा हुआ। उसमें कॉफी है और सामने बहोत सारा पहाड़ है। जिसके ऊपर काले बदल है। हरियालियां चारो तरफ और पीछे एक घर है झोपड़ी टाइप का।

अ जो कि एक छठ का त्यौहार है।

अ सबने हाथ में अगरबत्ती पकड़ा हुआ है धूल लगा हुआ है।